इस इमेज में आपको बहुत सारी मछलियां देखने को मिल रही है।

ये किसी मैकेनिक की शॉप दिख रही है यहाँ पे एक कार खोली हुई नज़र आ रही है यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है।

यहां पे एक बालकनी जैसा बना हुआ है चूढ़ाव लगी हुई है एक बोर्ड नजर आ रहा है यहां पे सामने खंबा दिख रहा है।

ये किस चीज की रेल चल रही है जिसमें बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं।

अलग अलग तरीके का सामान रखा हुआ है जिसमें ढोल रखा हुआ नजर आ रहा है।

टायर खुला हुआ है इंजन खुला हुआ नीचे रखा हुआ है पीछे खंबा नजर आ रहा है एक बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है।

ये इमेज किसी मंडी की नजर आ रही है जहां पे--

इसमें कुछ दो वाटर कूलर रखे हुए हैं दो गाड़ी खुली हुई नजर आ रही है।

खूब अच्छी डिजाइन में रेलिंग बनी हुई नज़र आ रही है चार खंभे नज़र आ रहे हैं पीछे बहुत अच्छी लाइटिंग नज़र आ रही है कुर्सियाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं।

टेबल लगी हुई नजर आ रही है ऊपर लाइटिंग लगी हुई नजर आ रही है।

यहां पे एक व्यक्ति चेयर लगा के बैठा हुआ है।

एक घास दिख रही है गार्डन में एक कुर्सी खाली रखी हुई है एक पानी की बॉटल रखी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में राजपाल कार का शोरूम नजर आ रहा है। एक व्यक्ति--

दो लेडीज़ खड़ी वाटरकूलर रखे हुए नजर आ रहे दुकानों पे गेंदे के फूल की हार नजर आ रहे--

बहोत बड़ा मिरर लगा हुआ नजर आ रहा है बलूंस लगे हुए हैं एक जाली का गेट लगा हुआ नजर आ रहा है।

एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई नजर आ रही है तांगा खड़ा हुआ नजर आ रहा है।